मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक रेलवे स्टेशन दिखाई दिया--

ये रेलवे स्टेशन में कई सारे लोहे के सारे पाइप टीन लगे हुई दिखाई दे रही सामने की ओर इस साइड मे कई सारे --

बाहर जोकि से गमले ओमले रखे गये है जालियां बनी हुई दिखाई दे रही है लोहे की जाली बनी हुई दिखाई दे रही है सामने की ओर--

साइड में एक स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिस स्कूटी में--

एक लेडीस बाल कटवाती हुई दिखाई दे रही इसमें मशीन रखी गई ऊपर की ओर व्हाइट कलर से पुता हुआ दिखाई दे रहा है की लाइटिंग जलती हुई दिखाई दे रही।

मुझे इस फोटो में सामने को एक दुकान बनी हुई दिखाई दे रही जिसमें शीशा लगा--

चेक चाइना गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा जंगल का नजारा इंसान नीचे की ओर बैठे है।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

मुझे इस फोटो में सामने की ओर हरे भरे सब पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दिन का समय है हमें पट्टी बनी हुई दिखाई दे रही सामने की ओर।

पोपट ले कपड़े पहन के खडे हुए दिखाई दे रहे हैं साइड मे।

इस फोटो में सामने की ओर चार लेडी चार लेडिज डांस करते हुए दिखाई दे रही है। चार बच्चे डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर क्लीयनिक जोन क्लीनिक एवं मनोवैज्ञानिकी --